यह एक छोटा सा मेला है जिसमें तरह तरह के झूले लगे हुए हैं।

एक दूर में ही लंबा सा बड़ा सा एक टावर है।

बहोत सारे लेस कुरकुरे के पैकेट टंगे हुए हैं।

अंदर में गुटखा के भी पैकेट टंगे हुए हैं।

आसमान में सफेद बादल छाए हुए हैं।

सामने एक लंबी सी बस दिख रही है।

यह एक दुकान है जिसमें तरह तरह के सामान रखे हुए हैं।

तकिए का कभर व्हाइट कलर का है।

बेड शीट नीले और सफेद रंग का है जिसमें फूल के छाप बने हुए हैं।

जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है हरे घास का मैदान है।

धूप से कार की परछाई बन रही है।

मंडप का छत लाल रंग का है।

ये एक नदी है जो कि पूरी तरह से सूख चुकी है।

आसमान में काले बादल छाए हुए हैं।

यहां लोग पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं।

ट्रक के पीछे बड़े अक्षरों में सफेद कलर से डी एस एल लिखा हुआ है।

बाहर तीन बाइक लगी हुई है।

ये एक फोन दुकान है।

ये एक लाइब्रेरी है जिसमें काले रंग के रैक है रैक में बहौत सारी किताबें रखी हुई है।

लाइब्रेरी में एक भी व्यक्ति नहीं है।

और एक व्यक्ति सीढ़ियों से छत पे चढ़ रहा है।

पूजा के पंडाल जैसा एक पेंडल बनाया गया है।

घर के बरामदे में लाइट्स लगी हुई है जोकि जल रही है।

कुछ लोग चल रहे हैं।

एक व्यक्ति खाद डाल रहा है जिसे सिर्फ हाथ दिख रहा है जिसने हाथ में एक नीले से प्लास्टिक के बर्तन में खाद रखा हुआ है।

झंडे लगे हुए हैं रोड पे बहुत सारे सूखी पत्ती भी गिरी हुई है।

छत पे एक फेन लगा है लाइट्स जल रही है।

एक चेयर भी रखा हुआ है पर दुकान में एक भी व्यक्ति नहीं है।